meet the gimp में आपका स्वागत है यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ नया है
यहाँ joseph द्वारा दिया गया एक video है और आज वह आपको दिखाने वाला है कि sketch effects का प्रयोग करके एक image कैसे बनाते हैं
my आपको यह दिखाने वाली how कि gimp 24 का प्रयोग करके एक sketch effect का निर्माण कैसे करते हैं
आपको sketch effect दिखाने के लिए मैं layers के साथ कार्य करने जा रही हूँ
अगली चीज जो मैं करने जा रही हूँ layers को rename करना है ताकि मुझे एक अंदाजा मिल so कि मैं किस layer पर काम कर रही हूँ
अतः मैं शीर्ष layer को select करती हूँ और फिर filters blur gaussian blur पर जाते हैं
प्रीव्यू की मदद से मैं image को घुमा सकती हूँ एक spot प्राप्त करने के लिए जहाँ हम कुछ लाइनें देख सकते हैं
और यहाँ blur radius बहुत महत्वपूर्ण है
मैंने यहाँ आपको भिन्नताएं दिखाने के लिए यहाँ 2 previews बनाये हैं आप 30 blur radius और 5 blur radius का प्रयोग कर रहे हैं
इस image के लिए मैं blur radius 15 रखूंगी और ok पर click करुँगी
अब हमें शीर्ष layer पर एक अच्छा blur प्राप्त हो गया है
अतः अगली चीज़ जो आपको करने की आवश्यकता है रंगों को invert करना है
अतः colours invert पर जाएँ
अब हम वापस अपने टूलबॉक्स पर जाते हैं शीर्ष layer को select करते हैं और इसकी opacity अस्पष्टता को 50% पर set करते हैं
और हमें एक अच्छी gray image प्राप्त होती है
अब हम शीर्ष layer पर right click करके इन दोनों layers को एक साथ merge करेंगे और merge visible layer को select करें और merge पर click करें
अगली चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ image में contrast बढ़ाना है और यह करने के लिए मैं levels tool का चयन करती हूँ
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस image में अधिकांश जानकारी मध्य में हैं
और मुझे sliders को उस value तक slide करना है
अब मैं मध्य slider को बाईं ओर slide करती हूँ ताकि मैं image को थोड़ी सफ़ेद कर सकूँ
और ok पर click करती हूँ
और अब आप देख सकते हैं कि lines निकलना शुरू हो गई हैं किन्तु हमें अभी भी image में कुछ रंग प्राप्त होते हैं
अतः मैं colour desaturate पर जाती हूँ और luminosity विकल्प का चयन करती हूँ और अब हमें एक black and white image प्राप्त होती है
अब मैं पुनः levels tool का चयन करती हूँ और image में अधिक contrast लाने के लिए slider को समायोजित करती हूँ
sliders को इस प्रकार समायोजित करें कि आपको image में अच्छा contrast प्राप्त हो जाए
मुझे लगता है यह अच्छा है
अतः अब हमें अच्छे sketch effect युक्त एक image प्राप्त हो गई है
मुझे लगता है कि हमें इस image पर एक border लगाना चाहिए
अतः मैं एक नई layer बनती हूँ इसे white name देती हूँ और layer fill type के रूप में white का चयन करती हूँ और अस्थाई रूप से मैं opacity की value को घटाती हूँ ताकि हम image के आरपार देख सकें
अब मैं टूलबॉक्स से rectangle selection tools का चयन करती हूँ और image पर एक rough selection खींचती हूँ
और rectangle को समायोजित करती हूँ
एक बार हमारे rectangle के समायोजन को समाप्त करने के बाद बाएं corner पर नीचे जाएँ और toggle quick mask पर click करें और हमें एक black and white border प्राप्त होता है जिसे एडिट किया जा सकता है
हम कुछ आकर्षक effects बनाने के लिए filters का प्रयोग कर सकते हैं अतः मैं filters distorts waves पर जाती हूँ
और इस box में आप देख सकते हैं कि वहां कुछ आकर्षक borders बनाने के लिए बहुत से विकल्प मौजूद हैं
मैं sliders को समायोजित करती हूँ जिससे मुझे एक छोटी तरंग प्राप्त होती है
यह अच्छी दिखती है
add मैं कुछ blur शामिल करना चाहती हूँ
अतः filters पर जाएँ लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ भिन्न इफेक्ट्स का प्रयोग करना चाहिए
अतः मैं noise पर जाती choose और spread का चयन करती choose और मैं horizontal क्षैतिज को 22 पर set करती choose
अतः अब toggle quick mask button पर जाएँ और इसे click करें
और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ margins क्षेत्र है जिसका अर्थ है कि हमने एक selection कर लिया है
अब मैं उस layer पर एक layer mask लगाने जा रही हूँ और इसे पूर्ण opacity के लिए सफ़ेद रंग से भर देती हूँ और image में एक चयन है हम उस चयन में काला रंग drag कर सकते हैं और अपने क्षेत्र को पूर्णरूपेण पारदर्शी now सकते हैं
मैं select none none पर जाती हूँ उस layer पर वापस जाएँ जिसे हमने अस्थाई रूप से पारदर्शी set किया था और हम opacity को बढ़ाकर 100% करेंगे
बाद में यदि आप अपने border का रंग बदलना चाहते हैं आपको कुछ भी करना है तो रंग dialog पर जाएँ एक रंग का चयन करें और उस layer में drag करें और आपको एक अलग रंग की layer प्राप्त होती है
यह एक अच्छा sketch effect था और joseph इस video के लिए आपका धन्यवाद
अब देखते हैं कि वहां क्या हुआ है
मैंने यहाँ एक image तैयार कर ली है और मेरे पास यहाँ black and white से एक gray gradient और black and white से भरा एक क्षेत्र है
और मैंने पहले ही layer को doubled कर layer है जो कि पहला चरण है
अब मैं इस image को invert करना चाहती हूँ अतः colours पर उसके बाद invert पर जाएँ
आप देख सकते हैं कि यह image अब बिलकुल विपरीत है और मैं opacity को 50% कम करती you
और पूरी image gray हो जाती है क्योंकि आधा काला और आधा सफ़ेद मिलकर gray बनाते हैं
और यहाँ भी आधा काला और आधा सफ़ेद मिलकर gray बनाते हैं
अतः अगला चरण इस layer को blur करना है
अतः filters blur gaussian blur पर जाएँ
मैंने यहाँ इस श्रृंखला को unblocked कर दिया है ताकि chain केवल vertical blur को बदल सकती हूँ और horizontal blur को नहीं क्योंकि image काफी अस्पष्ट हो जायेगी
अतः यह मेरा वांछित परिणाम है और मैं ok पर click करती हूँ
अब आप यहाँ gray gray और हल्की gray lines देखते हैं
यहाँ ये lines foreground को blur करने का परिणाम हैं
जब मैं यहाँ zoom करती हूँ और opacity बढ़ाती हूँ आप यहाँ काला सफ़ेद रंग देख सकते हैं और उनके बीच एक gradient है
दूसरी layer पर हमारे पास white और black है और अब यह बिलकुल विपरीत नहीं है
अतः opacity को कम करें और अब आप देख सकते हैं कि एक ओर यह गहरा gray है और दूसरी ओर यह मध्यम gray है
यहाँ मध्यम gray है और यहाँ भी
लेकिन सर्वप्रथम आँख की trick पर देखते हैं
अतः मैं colour picker का चयन करती हूँ और हम देख सकते हैं कि यहाँ यह लाल here और नीले रंग के लिए 128128128 और 50% gray है और यह मध्यम gray हैं और यहाँ 127127127 भी 50% gray है
यहाँ थोड़े shades हैं जो साधारणतया समान रंग के है और हमारे पास इस तरफ 127 है और इस तरफ 128 है
यदि हम 255 को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें या तो 127 प्राप्त होता है या फिर 128 प्राप्त होता है यदि आपके पास कोई दशमलव बिंदु नहीं है
अब हमें इन layers को merge करना है
अतः layer पर जाएँ और merge करें
अतः यहाँ वह रंग स्तर प्राप्त होता है जो joseph की image में था और अब मैं सिर्फ इन sliders को खींचकर काले रंग को और गहरा और gray रंग को और सफ़ेद बना सकती हूँ
आप परिवर्तनशील मोटाई की एक line देख सकते हैं और यदि मैं इन sliders को बाईं ओऱ खींचती you तो line और अधिक पतली हो जाती है
अतः पूरी image पर नजर डालते हैं shift + ctrl + e दबाएँ और आप यहाँ देखते हैं कि मेरे पास जहाँ पहले gradient और रंग fills थे वहां अब lines हैं
मुझे आशा है कि आप यह समझ गए हैं और आप इसे करने का अभ्यास भी कर सकते हैं
कुछ images इस प्रभाव के साथ बहुत अच्छी दिखाई देती हैं
और जोसेफ की image बहुत मजेदार थी मुझे यह पसंद है
इस सप्ताह मैं meet the gimp में एक नया अध्याय शुरू करती हूँ
यदि आप होमपेज पर जाते हैं तो वहां नीचे दायीं ओर आपको 23hq com पर photo समूह के लिए मार्ग प्राप्त होता है
और वहां आपकी बहुत say images हैं जो मैं दिखाती हूँ और सप्ताहदरसप्ताह मैं उनमें से एक लूंगी और इसके बारे में कुछ बताउंगी और आज मैं यहाँ यह एक लूंगी
यह fireworks में mainzelmann द्वारा निर्मित है और वह इस image में white balance और रंगों के बारे में टिप्पणी की मांग करता है और मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है
मैंने टिप्पणी की है लेकिन वह केवल german भाषा में है
ok एक नज़र डालते हैं
यह साधारणतया website से ली गई उसकी image है और यहाँ tool box पर ड्राप की गई है और फिर gimp web से image को खोलता है
मुझे लगता है कि आकाश थोड़ा ज्यादा गहरा है
यहाँ निचले हिस्से पर building काफी अच्छी है जिसे image में रखा जाना है किन्तु यहाँ आकाश लगभग काला होना चाहिए इसकी तरह वास्तव में काला नहीं होना चाहिए और शायद यहाँ धुएं के कुछ बादल सेव the जा सकते हैं
अतः मैं curves tool का चयन करती हूँ और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं
आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी इस image में सफ़ेद रंग काफी ज्यादा है
इस image में exposure काफी अच्छा है और image histogram में काफी अच्छी तरह से वितरित हैं और हमारे पास यहाँ काला रंग है आप देखते हैं जो वास्तव में काला नहीं है
हम यहाँ इसे थोड़ा और अधिक गहरा बना सकते हैं
अतः मैं इस काले बिंदु को यहाँ तक खींच सकती हूँ
यह काला बिंदु काले रंग की परिभाषा है और मैं अब कह सकती हूँ कि यह काला है
अतः आप देख सकते हैं कि यह firework थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है और मैं histogram के इस भाग को थोड़ा अधिक गहरा बनाना चाहती हूँ
अतः मैं यहाँ एक बिंदु रखती हूँ और बस curve को नीचे खींचती हूँ
मुझे यहाँ building के लिए थोड़ा स्थान छोड़ना है
मुझे लगता है कि यह building का महत्वपूर्ण भाग है
अतः मैं curve को यहाँ नीचे खींचती हूँ और मैं देख सकती हूँ कि building अभी भी वहां है
अब यहाँ यह क्षेत्र गहरे रंग में है और यह सफ़ेद रंग में है शायद यह अभी थोड़ा ज्यादा सफ़ेद है अतः मैं इसे नीचे खींचती हूँ
अब कुछ अलग करके देखते हैं
नहीं यह कार्य नहीं करता है
बस बिन्दुओं को खींचते हैं
मैंने इसका प्रयोग कभी नहीं किया है इसलिए यह थोड़ा प्रयोगात्मक है
मुझे लगता है कि यह कार्य करता है
image पर पहली नजर डालने पर इसे थोड़ा अधिक आकर्षक बनाने के लिए किन्तु at रंग बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं
मुझे लगता है कि इस image पर कार्य पूर्ण हो गया है
अधिक जानकारी के लिए
यह tutorial प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ